यह तस्वीर एक जीवंत और रंगीन उत्सव को दर्शाती है जहां कई महिलाएं एक साथ नृत्य कर रही हैं।

ये शांत और शांतिपूर्ण दृश्य लग रहा है।

बगल में दस डेकस और कुर्सियां हैं।

यह प्रकृति की सुंदर को दर्शाती है।

यह सब बहुत ही रंगीन और आकर्षक लग रहा है।

नीला रंग की पैकेट जहां निशा लिखा हुआ है।

पीछे पहाड़िया है आकाश ज्यादातर साफ है।

पीली दीवारों वाला एक स्कूल है जिसमें एक लंबा छत वाला रास्ता है।

बहुत सुंदर कला है जो हमें प्रेरित करती है।

चारों ओर किताबों और स्टेशनरी से भरे हुए शेल्फ है।

यह शांत और सुंदर दृश्य है।

यह एक सुंदर दो मंजिला घर है जिसका निचला हिस्सा हारा और ऊपरी हिस्सा नीला है।

अस्पताल के पास वेन और मोटरसाइकल सहित कई वाहन खड़े हैं।

मंच हरा है और पीछे एक लाल बैनर है।

एक लाल रंग के तीन पहिया गाड़ी के सामने एक आदमी और एक महिला खड़े हैं।

यह तस्वीर एक बेकरी की शोकेस को दिखाती है जो विभिन्न प्रकार के केक और पेस्ट्री भी भरी हुई है।

शोकेस ऊपर विभिन्न प्रकार के केक और पेस्ट्री के नाम लिखे हुए हैं।

स्टेशन के प्रवेश द्वार के बाहर कई लोग इंतजार कर रहे हैं।